इसमें मोर पंख फैलाए हुए है अगल-बगल पेड़ है पहाड़ जो लगा हुआ है बहुत जालीदार-जालीदार ऊंचा-ऊंचा है पेड़ में हरे-भरे पत्तियां लगी हुई है ।